यहाँ पे माकान दिखाई दे रहा है इसके दीवाल का कलर यहाँ पर लोहे का गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिछा हुआ है फूलों की माला भी दिखाई दे रही --

यहाँ पे बहत सारे मकान मंदिर वाइनिंग में दिखाई दे रहे है।